सामने एक बड़ा सा हॉल है जिसमे काफी सारे लोग खड़े हुए है हेलमेट पहने हुए है सभी ने मास्क लगाया हुआ है।

ये एक शादी का मैदान दिख रहा है जिसमें कार्पेटस बिछी हुई है लोग आते -जाते दिख रहे है।

इनमे कपड़ा रखा हुआ है दूसरी तरफ एक शीशा दिख रहा है जिसमे काफी सारा सामान रखा है जमीन दिख रहा हैं।